जैसा कि हम देख सकते हैं सामने स्कूल जैसा बना हुआ बाल्टी दिख रही है मल्टी तीन मंजिला दिख रही है इसमें अलग-अलग फ्लोर दिखे है।

एक बाइक दिखरही है कार दिखरही है पेड़ दिख रहे छोटे छोटे ऊपर खुल्ला आसमान दिख रहा है कुछ आदमी दिख रहे जो की बहुत अच्छे लग रहे है नीचे मट्टी पड़ी हुई दिख रही है जो कच्चा रोड भी --

जैसा कि हम देख सकते हैं की स्टाल दिख रहा है खाने का खाने की दुकान दिख रही है जिससे बैनर लगाओ जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है।